एक घर है। इसके सामने पूरी मैदान कुछ जगह पर सीमेंट बालू गिट्टी मिलाकर के कुछ मसाला बनाया जा रहा है मिक्सर बनाया जा रहा है।